वाइट कलर की एक दो --

ये एक बोहोत बड़ा मैदान सा है। इसमे कुछ लोग हैं। कुछ कपड़े हैं। कुछ किताबे हैं तो कुछ झाडू लगा रहे हैं और कुछ पेड़ हैं। पहाड़ हैं और कुछ मिट्टी-बिट्टी है।

एक मेन रोड है और यहां पर हरियाली हरियाली है | कुछ पेड़ पौधे हैं और कुछ पहाड़ है और कुछ येलो कलर का लगा हुआ है।